जबरदस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोग को।

कलर हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की वगेरह हैं प्लस वगेरह आइकॉन बन रहा है ।

काफी सारे भक्त आते हैं पूजा करने के लिए और यहाँ अपना माथा टेकते हैं देख सकते हैं बहोत ही सुपर डुपर लुक दिखाई दे रहा होगा।

हेलो गाइस देख सकते हैं ये ग्राउंड काफी मस्त है | जबरदस्त लोग दिखाई दे रहा होगा आपलोग को बहुत ही प्यारा सा देख सकते है इसमे |

यहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं क्रिकेट देख सकते हैं और बहुत ही सुपर डुपर लुक दिखाई दे रहा होगा आपको लोगो को देख सकते हैं और इसमें --

यह अलमारी है और जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को देख सकते हैं ।